यहां पर एक महिला पानी भर रही है और सामने में खेत में दो बैल खड़े हैं यहां पर दो बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं।

यहां पर नीले रंग का एक यंत्र रखा हुआ है।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

सामने में एक बहोत बड़ा बोर्ड दिखाई दे रहा है जो गुलाबी रंग का है।

सामने में बहोत बड़ा आसमान दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है।

यहां पर दो पिलर दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला है।

इसको चारों तरफ तर तिरपाल से घेरा गया है जो हरे रंग का है।

सामने में एक बहोत लंबा सा बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर करकट लगाया गया है।

इस दृश्य में बहुत सारी लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं जिन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखे हैं जैसे कि पीला गुलाबी लाल और अलग अलग प्रकार के।

यहां सामने एक औरत दिखाई दे रही है जिसे सफेद रंग का कपड़ा पहन रखा है।

यहां पर तीन वाहन दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक ट्रैक्टर एक टेंपू और दूसरा भी ट्रैक्टर है।

जूता अलग अलग रंग और आकार के हैं जैसे कि कोई लाल रंग का है तो कोई सफेद रंग का है।

दिखाई दे रहा है जिसका रंग लाल है।

सामने में बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है जो हरे रंग का है।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाया गया है जो सफेद रंग का है और उसमें काले रंग से कुछ लिखा हुआ है।

इस दृश्य में सामने में खुला मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें में पानी भरा हुआ है उसमें छोटे छोटे पत्थर हैं।

यहां पर कुछ टेबल दिख रहे है छोटे छोटे जो पीले और काले रंग के है।

यहा पे बहोत सारे लाइट लगे हुए है जो ऊपर टांगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक ट्रक है जिसका रंग सफेद है।

इस दृश्य में एक लम्बा सा रोड है।

यहां पर टेंट लगाया गया है टेंट नीले और लाल रंग का है।

एक ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है उसके नीचे एक टायर रखा हुआ है।

इस दृश्य में बहोत सारे प्रकार के सब्जी दिखाए गए हैं जैसे कि आलू गोभी बैगन टमाटर पत्ता गोभी लहसुन प्याज यह सब दिखाया गया है।

यहां पर एक करकट दिखाया गया है जो रॉड से लगा हुआ है।

किसी ने सफेद रंग का कपड़ा पहना है तो किसी ने नीले रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

सामने में कुछ व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं जैसे किसी ने लाल रंग का कपड़ा पहना किसी ने बैंगनी रंग का।

सामने एक बहोत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जो हरे रंग का है।